यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रैली निकल रही है बहुत सारे लोग हैं।

यहाँ मेला लग रहा है यहाँ मेला लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं।

यहां पर स्टेज बना हुआ है स्टेज के बगल में यहां लोग फोटो खिंचवा रहे हैं।

यहाँ पर चट्टान ही चट्टान का बना हुआ है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं बीच-बीच में पेड़ --

नदी है नदी के चारों तरफ दीपक जल रहे है बहुत सारी महिला पूजन कर रहे है रात का --